ये फुंगडु एक लड़का छ येन चश्मा पहनया छिन।

ये फुंगडु भीतर एक आदमी भी च वख भीतर पर्ण कई साड़ी लाइट रंग बिरंगी लगीं छिन।